ऑटे लगी हुई है साइड में उधर रोड के --

सामने कि ओर देखिये कैप लगा रखी है ब्लू कलर की रेड कलर --

जा रहा है। एक आदमी स्कूटी पे आ रहा है। एक बाइक यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये देखो झंडा है। साइड में गाड़ियाँ बहोत ज्यादा खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

कोल कलर की बिल्डिंग बनी हुई है क्ले की यहाँ पे।

खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने कि ओर एक शॉप बनी हुई है। एक --